में झाड़ू रस्सी प्लास्टिक की डोरी और पाइप रखे हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ा ऑडियो साउंड सिस्टम दिख रहा है।

बोर्ड पर शर्मा ऑडियो लिखा हुआ है।

दीवारो पर गुंबरे और फूलों की मालाएं लगी है।

काउंटर के पास तीन कुर्सियां रखी है।

व्यक्ति एक पैर को ऊपर उठाकर व्यायाम या उपचार कर रहा है।

और एक लंबा गलियारा है जिसमें छत और खंभे लगे है।

यह एक आई_सी_आइ_सी_आई बैंक की एक शाखा है।

आंगन के बीच में एक बड़ा पेड़ है।

और पेड़ और पानी की टंकी भी नजर आ रही है।

यहां सेव संतरा पपीता अनार और कीवी जैसे कई फल रखे गए हैं।